आता भी है आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन रैक --

यहाँ पर दिखाई दे रहा हैं कि बहोत बड़ा

यहां पर दो आदमी दिखाई दे रहा है जो एक लड़का है।